जिसके किनारो पे बहोत सारे दरक देखे जा सकते हैं सामने एक दरिया भी दिख रहा है।

इसमें कुछ बादल छाए हुए हैं इस साइड से ईंटों की एक छोटी दीवार जैसी भी दिख रही है और इसमें दो सीरिया भी नजर आ--

साइड में लॉकर जैसे भी है और इसमें आगे दो बड़े अ सूट केसेस भी लगे हुए हैं।

बहोत ही खूबसूरत दिख रहा है इसमें शाम का वक्त दिखाया गया है।

इसपे ऊपर बैनर पे सोलिस भी लिखा हुआ है अंदर एक ट्रैक्टर भी है जो कि जैसे डिसप्ले में रखा हुआ है।

इसके इर्द गिर्द बोहोत सारे घर बने हुए हैं इसमें बोहोत सारे पेड़-पौधों को भी दिखाया गया है और इसमें कुछ बेंच भी लगे हुए हैं बोहोत जगह बैठने के लिए।

जीसमें पानी पर हवा के जरिए छोटी छोटी लहरें जैसी बन रही है।

सामने एक दरिया जैसा भी दिख रहा है जीस पे पार जाने का रास्ता भी दिख रहा--

इसपे एक अं पेंटिंग या बोर्ड जैसा लगा हुआ है।